एक लोहे का सीडीं लगा हुआ है।

आगे भी एक बोर्ड है जिस पर अधट्ट लिखा है।

लाइटे जल रहीं हैं टेबल पर बहौत सारी मछलियां रखी हुई हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर एक नदी के जैसा दिखाई दे रहा है।

चला जा रहा है और उसके साइड से मोट साईकिल भी जा रहा है।

दे रहा है जिसके आस-पास में कुछ घर दिखाई दे रहें हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक प्लेटफॉर्म है जहां पर एक --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर एक टेबल है टेबुल के पीछे में --